इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइट्स की अच्छी व्यवस्था है।

जहां पे रेड कलर का कॉर्नर है।

इस फोटो में दो लंबे लंबे पेरो का चित्र दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे राकेश लिखा हुआ है।

यह पीले कलर का है।

यहां पे फैन भी दिखाई दे रही है।

में चम्मच रखे हुए है।

टेबल कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

यहां पे कुछ छोटे छोटे सजावटी पेड़ पौधे भी हैं।